दीवारें खिडकियाँ और अम पंखे लगे वो काफी अच्छे से सजाया हैं नाइस अच्छे से रखा हैं नाइस नाइस नाइस नाइस नाइस --

ये एक शराब की दुकान जहां पे शराब पर नॉट --

वहर और सब रखा बलून से पार्टी की तरह सजाया हुआ पार्टी में लोग आते खाते पीते सब करते हैं।

ग्रीन कलर के पौधे रखे हुए हैं सब अच्छे रखा हुआ है नाईस अच्छे से रखे हुए नाईस ।